खिड़की से अंधेरा है ऊपर गीजर लगा है.

ये सोफे वाला रूम है यहां पे कई सोफे हैं.

दीवार पर कुछ पिक्चर्स हैं पिक्चर्स को पेंसिल से बनाया गया है.

एक महिला खड़ी है जिसने हरे रंग की साड़ी पहनी है.

ऊपर से एक महिला सीढ़ी से चढ़ती हुई आ रही है.

एस_ई_बी लिखा है यहां से कैश मिलती है.

यह सब्जी की दुकान है नीचे कुछ बोरियां है जो कि भुरे कलर की है।

आपस में लड़ रहे है साइड में एक आदमी है जिसने ब्लैक शर्ट पहनी है.

यहां पे बैनर है लोग आगे चल रहे हैं पीछे लोग आ रहे हैं।

सामने लाल रंग की चादर है पेड़ हैं पेड़ पर पत्ते हैं।

बच्चे हैं झंडा है फ्लैग है हरा मैट है लोग हैं नाच रहे हैं स्टंट कर रहे हैं।

पर्दे हैं सीदे हैं और हैं।

पेड़ है आसमान है नीला है पीला है.

यहां पे तस्वीर है लोग है पेंट पहनी हुई है लाल फोन है पीछे हैं लोग है मास्क पहना है।

यहां पे माँ है पिता है पीछे मूर्ति है मां की मूर्ति है बैलून है।

पीछे पेड़ है हरा है.

है लोग है काले है सफेद है।

दरवाजे हैं बाल्टियां हैं.

नीचे ईंटें है पीछे कार है।

ईंटे लगी हैं लाल फूल है पिंक फूल हैं.

जिन्होंने अलग-अलग कपड़े पहने हैं पीछे फ्लावर हैं ऊपर काला रंग का कुछ दिख रहा है.